सामने गिट्टी डली हुई है रेत डली हुई है बाउंड्री की गई है पेड़ भी लगे हुए है और लाइट के खंभे भी लगे हुए है पास मे--

और नीचे छोटी-छोटी घाँस भी उगी हुई है बच्चों ने ब्लैक कलर के और वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ एक कालोनी हैंउस कालोनी मे बहुत सारी बिल्डिंगे बनी हुई हैं बिल्डिंगों मे लोहे की खिड़की लगी हुई हैं।